पीछे दुकान के पेड़ दिखाई दे रहा है खंभा दिखाई दे रहे है।

और टेबल और कुर्सी लगी हुई दिखाई दे रही है और तीनो आदमी खाना खाते हुए दिखाई दे रहे है।

और इसी बीच में मुझे बहोत पहाड़ी दिखाई दे रही है बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है एक घर दिखाई दे रहा है।

वहाँ स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज पे फूलो की डेकोरेक्शन दिखाई दे रही है गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है बहोत सारी लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे पत्थर की पत्थर की पहाड़ी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा हॉल में बहोत सारी कुर्सी टेबल दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे एक दो तीन चार आदमी दिखाई दे रहे है फूलो की डेकोरेशन दिखाई दे रही है और--

बहोत बड़े-बड़े पत्थर डलें हुए दिखाई दे रहे है।

और उसके अंदर बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है जाली लगी हुई दिखाई दे रही है और बाहर लिखा है वृक्ष प्रदुषण विश्व--